वहां पीछे से कुछ बंदे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये बंदा इस पत्थर को पकड़ के है जिसने ब्लू कलर की पहन के रखी है।

यहां पे ये पांच छे डॉक्टर हॉस्पिटल में है।